गैलरी टाइप लग रही है यहां सामने में कुछ बड़ी सीक्रेट की है जालीदार--

एक पानी की यहां एक पानी की टंकी दिख रही है ऊपर में लगी है बड़ी सी सामने में कुछ बिल्डिंग दिख रही है जिसकी पट्टी जो है किनारे की नीले कलर जो पुती हुई है बीच में सफेद सा पुता हुआ--

यहाँ पे पांच बसे खड़ी हुई है जो की चार बसे जो है एक से कलर की हैं ब्लू कलर की एक जो बस है सफ़ेद और लाल कलर की है ऊपर में आसमान दिख रहा है।

बहुत सारी मशीन -रखी हुई है जोकी ब्लैक कलर और सफेद कलर में है ऊपर में कुछ लाइट्स जल रही है |